पीछे भगवान का फोटो लगा हुआ है।

जो की टैटू और पियर्सिंग की दुकान--

यहाँ पे एक छोटे बोर्ड पे लिखा है टैटू ।

नाक में कान में जबान पे पियर्सिंग की हुई है।

इलेक्ट्रिक की है जिस पे लिखा है मोस मोस्ट एंड कंप्यूटर सेल एंड सर्विसेज ।

साइड में दो बोर्डस लगे हुए हैं।

ये एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

मंदिर के गेट पे लिखा है गेट नंबर फोर ।

एक लड़की सर के सामने खड़ी होके कुछ बात कर रही है।

प्लेन खड़ा है जिस पे लिखा है इंडिगो ।

ये एक स्कूल का क्लासरूम दिख रहा--

कुछ बच्चे बैठ के वहां प्रोजेक्ट बना रहे है।

साइड में एक गार्डन बना हुआ है जहां काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।

वहीं पे बाहर पूरी हरियाली है।

सामने डेस्क पे एक मिरर रखा हुआ--

कारपेट के उधर एक लेडी खड़ी है जिसने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है।

मैदान के यहाँ मिट्टी का एक बड़ा सा गेट जैसा बना है।

ये एक हॉस्पिटल का रूम दिखाई दे र--

यहां पे बहुत सारे लड़के लड़कियां खेल रहे--

और एक खाली मैदान जैसा है।

अंदर दो लड़के खड़े हैं बाहर एक सीढ़ी लगी हुई है।

कमरे मे एक बिस्तर है बिस्तर पे तकिये रखे हुए हैं।

छत के ऊपर ए_सी खाने की टेबल लगे हुए हैं वहीं ग्रीन कलर --

गाड़ियों के कवर्स की है सीट कवर्स की है।

बाइक के सीट कवर्स की हैं और गाड़ियों के अलग अलग समान टंगे हुए हैं खुप

साइड में एक थोड़ा बड़ा पेड़ है जिसमें रेड फ्लावर्स हैं।

मूर्ति के सामने एक गोल पात्र रखा हुआ --

उस साइड में एक साइकल और बाइक खड़ी है।

ये एक मच्छी मार्केट दिखाई दे रहा है।

नर्सरी में बहुत हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

टोल प्लाजा पे बोहोत भीड़ लगी है।

टोल प्लाजा पे एक तरफ कारों की लाइन लगी हुई है एक तरफ ट्रकों की लाइन लगी हुई है साइड में एक--

ये एक कॉस्मेटिक की दुकान दिखाई दे रही है जहां पे बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं।

नर्सरी में बहोत सारे छोटे छोटे पोधै रखे हुए हैं।

बीच में छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं सामने बहु मंजिला इमारत खड़ी है।

साइड में एक लड़की वॉक कर रही है।